यहां एक पोस्टर बना हुआ है जिस पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लिखा हुआ है।

और ऊपर की ओर बडोनिया गेस्ट हाउस लिखा हुआ है।

यहां एक पोस्टर बना हुआ है जिस पर बिगनन बुक सेंटर स्टेशनरी लिखा हुआ है।

नीचे व्होलसेल बुक सेलर भी लिखा हुआ है जो लाल रंग से लिखा हुआ है।

यहां पर एक बस खड़ी हुई है जो हरे रंग की है उसमें एक पीली लाइन बनी हुई है।

अंदर बहोत सारी कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं और बहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारी स्कूटी रखी हुई है जिसमें कुछ सफेद और लाल रंग की है।

और पास ही में एक टेबल भी रखी हुई है और एक डिब्बा भी रखा हुआ है।

यहां दीवार पर झा इंजीनियरिंग वर्क्स लिखा हुआ है।